पानी में डुबे हुए है कुछ लोग ऊपर भगवान को अर्ग दे रहे है कुछ लोग पानी से बाहर निकल रहे है पीछे देखने पर पेड़ दिखाई दे रहे है पेड़ बहोत दूर तक फैले हुए--

एक दुकान दिखाई दे रही हे दुकान पे एक पड़ा हुआ हे जहाँपर एक बोर्ड इसपे कुछ लिखा हुआ हे बिजली के तार बंधे हुए निचे शटर दिखाई दे रहा--